इस क्षेत्र में यह दिखाया गया है कि यह कोई बहुत बड़ा सा घर है गैरेज जैसा।

इसमें ट्रक रखा गया है एक वाइट में साइड कार है कार के ऊपर कवर रखा गया है।

एक छोटा है एक बड़ा है और एक छोटा है।

चित्र में दिखाया गया है कि बहोत बड़ा सजावट हुआ गया है।

और ये में रझा टाइप का है।

पत्ती भी लगे हुए हैं और वाइट में गमला में फूल रखा गया छोटे बड़े से लेकर--

इस चित्र में दिखाया गया कि एक प्रकार का गैरेज --

जिसमें आगे का पोर्शन पूरा टूट गया है ब्लैक कार का।

और एक तर्कूल का पेड़ है आ छोटे छोटे पेड़ पौधे में बहोत सारे लाइट लगे हुए है।

इस चित्र में यह दिखाया गया है कि यह एक मोटर कंपनी --

कंपनी या दुकान है जिसमे एक बहुत सारे मोटर भी लगी हुई हैं।

और आगे भी फ्रंट पर रखा गया है और इसके अंदर लाइट जल रही हैं।

छोटे छोटे हेलमेट भी रखे गए हैं उसके साइड में।

बैग भी रखी गई है में कर कर व्हाइट में--

और इसमें बहोत सारे लाइट जल रहे हैं और गत्ते भी रखे गए हैं और जंगले हैं और पेज की गड्डी है।

इस चित्र में यह दिखाया गया है कि ये सैलून है।

और एक पोल है जो तार से घिरा हुआ है।

व्हाइट में सजावट हुई है इसके और गुब्बारे साइड में तार और और बल्ब भी लगे हुए हैं।

हाॅल है जिसमें बहोत सारे कार हैं कलरफुल भी काल हैं और ब्लैक व्हाइट भी कार हैं।

और इसमें पानी भी है जो गंगा मईया का पूजा किया जाता है और एक औरत खड़ी है रेड साड़ी पहन कर एक नीचे बैठी हुई हैं और वहां बच्चे भी हैं और --

इस क्षेत्र में यह दिखाया गया है कि यह छोटे छोटे पौधे हैं।

और इसमें फूल भी बहोत सारे लगे हैं जो रंग बिरंग की है।

इसमें बगल में कार रखा गया है।

मोबाइल बेच रहा है तीन कस्टमर खरीद रहा है एप्पल का लोगो लगा हुआ है।

इस क्षेत्र में यह दिखाया गया है कि--

इस क्षेत्र में यह दिखाया गया है कि ये रोड के किनारे एक गेट है गेट बंद है उसे कलरफुल है जिसमें--

ऑटो भी जा रहा है और ऑटो के पास में एक बहोत बड़ा बस खड़ी है।

और घांस ओस हैं जमीन पर बैठा गया हैं।

इस चित्र में यह दिखाया गया है कि यह एक गैरेज है।

और एक पीछे टावर लगी है।

पेड़ पौधे छोटे छोटे पेड़ पौधे--

इस इस क्षेत्र में दिखाया गया है कि यह मेडिकल पब्लिक मेडिकल स्टोरेज है पैनल लगा हुआ है।

और दवा मे शेटर है और दुकान है साइड में एक जेंट्स खड़े हुए हैं।

दो दो खड़े हैं एक निहूरे हुए हैं जो हाथ में डंटे लिए--